इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें नीचे कुछ कुर्सियां डली हुई है और उसके ऊपर लिख रखा है मेक पॉइंट --

दुकान के ऊपर लिखा हुआ है श्री राजेश्वरी बुक लिंक्स --

इस फोटो में एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

एक उम्म कुर्सी घूमने वाली है कुर्सी के साइड में एक वाइट कलर का कुछ सामान रखा है और उसके साइड में एक गमला रखा है गमले का रंग लाल रंग का है उसमें हरे रंग का कुछ--

और जो दरवाजा हैं वो चॉकलेटी कलर का--

इस फोटो में एक पीसी दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है वो काले रंग की टेबल पर रखा हुआ है।

इस फोटो में एक लड़की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक गिराउंड दिखा रखा है।

ग्राउंड में हरे रंग के घास लगी हुई है।

इस फोटो में कुछ बड़ी बड़ी टाइल्स दिखाई दे रही हैं जो ब्लैक कलर की हैं।

पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे और नीचे रेत दिखाई दे रहा है।

और उन अलमारियों के ऊपर एक गद्दा बिछा रखा है।

उन तीनों भागों में सामान रखे हुए हैं।

और अलमारी के ऊपर कुछ डब्बे रखे हुए है।

दो बिल्डिंगों के बीच में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिख रखा है।

उसके साइड में एक और पोस्टर लगा है जिसके ऊपर लिखा है।

रंग के कुर्ता और पजामा पहन रखा है।

जिसकी दाढ़ी लंबी लंबी है और सफेद रंग की है।

पिप्पी लटकी हुई दिखाई दे रही है।